यहाँ पर तलाब हमे देखाई दे रहा है यहाँ पर हरे-हरे पेड़-पौधे दिखाई दे रही है यहाँ पर कुछ व्यक्ति खड़े देखा रहे है।